एक जगह दिख रही है जहाँ एक लड़का फोटो खिकवा रहा है चश्मा लगाया हुआ है केप पहना है व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहना हुआ है पीछे की तरफ बड़ा सा ब्रिज है ब्रिज के नीचे बहुत बड़ा समुंदर है और सामने लड़का पत्थर के उप्पर बैठा है।